और लोग खड़े होकर टीवी देख रहे हैं। खाना खा रहे हैं |

जो काफी खूबसूरत दिख रहा है।

घर के ऊपर का हिस्सा है जिसका ढलाई का कार्य चल रहा है। मिलकर --